यहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के आगे एक रोड निकल रही है पक्की और --

घर बने हुए हैं घर के इधर साइड एक व्हाइट कलर की कार खड़ी है और इधर साइड एक और मोटरसाइकिल खड़ी है छोटे-छोटे पत्थर पड़े हैं।

पीछे दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई हैं और ऊपर रेस्टोरेंट लिखा हुआ है उपर मे बहोत सारे कमरे बने हुए हैं नीचे कुछ सामान--

यह एक दुकान है दुकान के बाहर सोफे पड़े है सोफो के बाहर एक स्टूलस बढ़िया लकड़ी के फर्नीचर की।

कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा है इधर एक--

यहां पर बहोत ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ स्कूटी और कुछ मोटरसाइकिल वगैरा भी पड़ी है इसके पीछे भी बहोत सारी दुकानें लगी हुई है उसके बाहर खिड़कियां दरवाजे --

ऊपर कुछ खिड़कियां लगी हुई हैं।

यहां पर ग्राउंड के अंदर पेड़ों के नीचे एक आदमी खड़ा है आदमी के पीछे एक बैग डाला हुआ है रेड कलर का।

यहां पर अ तीन लड़कियां हैं और एक लड़का है जो रेस--

यहां पर पत्थर की दीवार बनी हुई है दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है और गोल सर्कल में पेंटिंग बनी हुई है।

यहां पर जय भैरु फ्रूट्स कॉर्नर है।

और के अंदर की साइड एक आदमी खड़ा है एक आदमी बाहर खड़ा है पीछे भी कुछ दुकानें लगी हुई --

इस फोटो के अंदर बहोत सारे आदमी बैठे हैं कुछ कुर्सियां और बेंच लगी हुई है।

एक हाथ आगे किए हुए है और डांस वाली पोज में खड़ी है एक रेड कलर की दरी ब --